यहाँ पर कुछ व्यक्ति टेबल पे कुछ किताबें रखी हुई हैं कॉफियाँ अपना कार्य कर रहे हैं। कुछ कुर्सियाँ खाली नजर आ रही हैं और इधर दो व्यक्ति --

दरवाजा बना हुआ है। इसमें साइड में फूल की लाईनों में दोनो सजे हुए हैं और उस साइड फूल लगे हुए हैं और नीले कलर का --